ये हम पूर्वाचल टी.वी.एस. का शोरूम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे हमे एक व्यक्ति की मूर्ति देखने के लिए मूल मिल रही है।

और इस फोटो में हमें कुछ बाइके भी नजर आ रही है। साइड में एक नीले रंग की छत जो दिखाई दे रही है। ये पन्नी की छत बनाई गई है। जिसक जिसके-।